दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ जगह ग्रीन दिखाई दे रहा है कुछ जगह दिखाई दे रहि है इसके स्लेटी दिखाई दे रही है और यहाँ पे कुछ पे --

कलर्स दिखाई दे रहे है रॉयल ब्लू कलर दिखाई दे रहा हैं।

कुछ लोग दिखाई यहाँ पे एक लडकि ने पर्पल कलर कि शर्ट पेहनी हुई दिखाई दे रही है आसमान का कलर ग्रे सिलेटी पर्पल और दिखाई दे रहा है स्काय ब्लू दिखाई दे रहा है हलका सा पिंक कलर दिखाई दे रहा है।

कुछ लाईट ग्रीन दिखाई दे रहा है कुछ पर्पल ग्रे कुछ मे पर्पल और डार्क ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर दिखाई दे रहा है नीचे पिंक और ग्रीन कलर दिखाई दे रहा हैं कुछ बहुत सारा --

वहा बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है आसमान मे येल्लो कलर दिखाई दे रहा है सुरज दिखाई दे रहा है ग्रे कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर और ब्राउन कलर --

यहाँ पे आसमान का कलर ग्रे और सिलेटी दिखाई दे रहा है और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है हया पे।

बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है स्टूल दिखाई दे रहा है चेअर दिखाई यहा पर एक महिला दिखाई दे रही है और यहा पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे औरेंज कलर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर दिखाई दे रहा है बहुत सारे बॅनर दिखाई दे रहे है और बहुत सारी चीजे दिखाई दे रहि।

और यहाँ पे बहुत सारा आसमान ग्रे दिखाई दे रहा है स्लेटी दिखाई दे रहा।